एक जंगल एरिया नजर आ रहा है जहां पर कुछ मैप नजर आ रहे हुए हैं मैप है और कुछ सारे इंस्ट्रक्शन नजर आ रहे हैं।

यह कपड़ों की दु-कान नजर आ र-ही है।

यहां बहुत सारा खाना बनता हुआ नज़र आ रहा है कुछ बाइयाँ बैंगन काटती नज़र आ रही है कुछ बाइयाँ आलू काटते हुए नज़र आ रही है कुछ टे- टैंकर का नजर आ रहा है।

एक पै बहुत सारे बेंच नजर आ रहे हैजिसमें बच्चे बैठे हुए है विंडोज नजर आ रहा है पीछे में--

सामने में उसका पर्स और अ गॉगल नजर आ रहे हैं कैंची नज़र आ रही है आईना है प्रोडक्ट नजर आ रहे है।

नीचेमे बोहोतसारे फूल नजर आरहे हे जो की लाल और पीले कलर का हे एक आदमी हे जो लूँगीमे नजर आ रहा हे खड़ा हुआ दुकान के अंदर।

दूसरी तरफ एक आदमी है जो ग्लाफस् पहने हुई नजर आरा ड्रम साईडमे नजर आरहा है नीला कलर का।

यह कुछ सर्विसिंग सेंटर जैसा कुछ नजर आ रहा है जहाँ पर कुछ गाड़िया नजर आ रही है बहुत सारी एक ऑटो है जहाँ पर एक आदमी बैठकर ऑटो सुधरता नजर आ रहा है।

यह एक मंदिर है जो की एक सतरंगी कलर का है और एक सफेद कलर का है।

रंगी कलर उम वाले मंदिर के सामने में दो हाथी हाथी-इ की मूर्तियां बनी हुई है एक कार नजर आ रही है एक बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है। बीच में--

कहीं किसी की चप्पल नजर आ रही है एक दरवाजा है जो खुला नज़र आ रहा है एक झाड़ू नज़र आ रही है बहुत सारे इक्विपमेंट नज़र आ रहे है यहाँ पे--